कला बेस मे पानी भरा है मछली भी उचक रही है बहुत एक रोड भी ढला है बहुत ही अच्छा लग रहा है।

फोटो भी लगी है लाइटे भी लगी हुई है कुर्सी भी रखी है लेडिज यहाँ पर भाषण दे रही है उसके नीचे एक कैमरा भी लगा है बहुत सी एक सीढ़ी भी रखी है बहुत ही अच्छी है।